इस फोटो में मुझे कुछ टीचर दिख रही है जिन्होंने --

यहाँ एक बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही हैं।

औरत खिड़की के पास रखी एक छोटी सी डोर में से कुछ उठाती नजर आ रही है।

इस फोटो में मुझे दो बड़े - बड़े बिल्डिंगे नजर आ रही है।

और यहाँ पर बड़ी -बड़ी सीकों से बने ढांचे भी लगाए गए हैं।

फौहारे के पास कुछ गमले रखे दिखाई दे रहे है।

देखने में एक मैकेनिक की गराज लग रही हैं।

ऐसा लग रहा है कि यह एक मेहैल है नीचे --